इस फोटो में आप देख सकते है की हरे हारे कलर की चीज पड़ी हुई है नीचे उसके पत्ते भी भिखरे हुए है तथा एक मेड छोटा सा दिखाई दे रहा है।

तथा हरे रंग की कालीन बीछी हुई है भवन पूरा सफ़ेद रंग का है उसकी खिड़कियां दिखाई दे रही है और लोग भी नज़र आ रहे है खूब सारे --

हरी हरी घासें दिख रही है तथा अगल बगल काफी बड़े बड़े पेड़ भी है बीच में एक बॉर्डर सा बना रखा है गोल टाइप का जिसके --

इस फोटो के अंदर कई बच्चे जो की स्कूल की यूनिफार्म पहने हुए है तथा एक टीचर भी है जो की लाल कलर की साड़ी पहनी है तथा एक पार्क --